और पेड़-पौधा सब चीज बा।

एक मेडम रजिसटेर मे दवाई के नाम या पर्ची बनावत बा एक डाक्टर उनने खड़ा बा।

और ऊपर कोई पोस्टर लगल बा जेकर सामने आदमी लोग कुछ बात बतिया रहल बा--

इहा-इहा पर चूना से लाइन खींचल गइल बा कालम कोड़े खातिर--

यहाँ पर नया-नया रिक्शा खड़ा बा बगल में एक आदमी तंबाकू बना रहल बा और रिक्शा आदमी के जीवन यापन करे के एक साधन होला।

ये एक होटल बा ए मे रोज आदमी अपन-अपन मन पसंद के खाना पीना खाये अवला।

पीछे मे बहुत बड़ा तीन मंजिला बिल्डिंग और दो मंजिला बिल्डिंग दिख रहल बा।

बगल मे एक आदमी अपन होस अस्पताल मे दवाई लेवे खातिर जात बा बगल मे एक कार खड़ा बा।

यह एक डॉक्टर का घर ब डाक्टर के सामने पांच छः आदमी खड़ा ब--

पर दूल्हा एक महिला पुरुष खड़ा बा पीछे कुछ मूर्ति बाहिन और बहुत ही बढ़िया सजावल गएल बा--